ब्लैक के सामने मे बस के सामने मे दो आदमी खड़े है।

और ये आदमी यहाँ पे खड़ा होके फोटो खिचवा रहा --

टाइल्स को दर्शाया गया है ये बोहोत लाइट कर रहा है। सामने वाइट कलर का है।

और नीचे मे काफी साफ सुथरा है राजा महाराजा का होगा घर |